कान में डेली यूज के बहोत सारे सामान रखें --

रही है बहोत सारी लाडिसें दिखाई दे रहीं हैं दीपक जला रहीं हैं हमें --

एक बोरी रखी हुई है लाल कलर की। एक रदी रखी हुई है।

टेन्ट लगा हुआ है| उपर फूलों से सजावट की गई हे। नीचे गुलदस्ते --

हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर --

यहाँ हमें बहोत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। एक कार खड़ी हुई है।

तारो की जन्जरील लगाई गई है।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हमें कपड़ो की दुकान दिखाई दे --

यह ऊपर लोहे की जाली लगी हुई है।